और ग्रीन कलर की वो सिरिंच लगाई गई है बहुत सारी सिरिंच घर के ऊपर लगाई गई है बहुत सारी।

सामने सब कोई फंक्शन है उसमें बहोत सारा ये सामने फूड का रखा हुआ है बहोत सारी चीजें रखी हुई है।

गोल गोल बहुत सारा चेयर में भी कपड़े लगाए हुए हैं बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है व्यू आकाश का भी।

केबीसी इस स्कूल का यहां पर बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं हुई है छोटे से लेकर बड़े बच्चों की क्लास नई हुई है।

सामने एक दुकान दिखाई दे रही है जहां पर टेडी बेयर विव मूर्ति लैंप वैम्प सब रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने फैन दिखाई दे रहा है यहां पर लाइटिंग भी लगी हुई है बहुत सारी लाइट लगाई गई है।

ये दुकान में सी डी दिखाई दे रही है वहां पर कार्पेट ग्रीन कलर का कार्पेट बिछाई दे हुआ है दुकान में तीन लोग दिखाई दे रही है।

सामने कुछ हीरने माने कुछ पक्षी कोई सा जानवर दिखाई दे रहा है।

टंगा हुआ दिखाई दे रहा है एक भैया हैं जिनका फेस क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है ये शायद दुकान के मालिक हैं।

ये वो शायद कुछ अभी ये बनने वाला है टेंट वेंट तैयार होने वाला है यहां पर बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया है ये।

ऊपर फैन दिखाई दे रहे है यह भैया दाढ़ी बना रहे है उनके बगल वाले भी भैया दाढ़ी --